और कुछ कांटे और लकड़ियाँ आस पास रखी हुई है |

ग्रीन कलर का साइन बोर्ड है।

और उधर की तरफ एक लॉकर बना हुआ दिखाई दे रहा है जिसपे --

सामने की तरफ एक लेडीज बैठी है जो हाथ जोड़ कर बैठी हैं ।

और सामने की तरफ एक बड़ा सा टावर नज़र आ रहा है |

कुछ नीचे अलग-अलग तरीके के रंग बिरंगे कारपेट बिछे नजर आ रहे है।

एक अलमारी बनी हुई दिखाई दे रही है । ज --